फल के पौधे भी लगे हुए है और उनके बीच में कुछ छोटॆ -बड़े पेड़ लगे हुए है पीछे के साइड में एक बडा-सा जंगल दिख रहा है ।

और उसमे से येलो कलर की पट्टी भी निकली हुई है बस में एक इंसान चढ़ता दिख रहा हैं ।

इस इमेज में एक बडी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की सफ़ेद कलर की उस बिल्डिंग के दोनो तरफ में कांच लगे हुए है जो ब्लू कलर के हैं।

बिल्डिंग के बाहर छोटे - बड़े पेड़ - पौधे भी लगे हुए हैं।

स्टेडियम के चारों तरफ बड़े -बड़े लाइटे और पेड़ -पौधे लगे हुए दिख रहे है ऊपर आसमान दिख रहा है जोकि वाइट कलर का है उसमें --

रैक के साइड में एक दुसरी रैक भी रखी हुई है जिसके ऊपर भी बोतले और समान रखा हुआ है जो किराने का समान हैं ।

इसके ऊपर और दोनों साइड रेलिंग लगी हुई है ऊपर एक पूल बना हुआ है इसके राईट साइड में बहोत सारे पेड़ लगे हुए है।

लगे हुए हैं स्टम के पीछे के साइड में कुछ लोग खड़े हुए है।

पौधे लगे हुए है और पौधों के उस साइड में दूर पहाड़ भी दिख रहा है इस पहाड के ऊपर सफ़ेद कलर का आसमान उतरता हुआ --

दोनों साइड में बहोत सारे लोग भी खड़े हुए दिखाई दे रहे है लेफ्ट साइड में बहोत सारे फूल लगे है राईट साइड में फूल लगे हैं ।